दूर-दूर से लोग आये हुए है यहा पे से --

ये वो अति सुन्दर है अंदर से भी और बाहर से इसके कलर कॉम्बिनेशन बहौत ही प्यारा और बहौत ही --

चार मर्कुल यहाँ बने हुए हैं ।

छोटे भी बडके भी यहा लोग है ।